ओ स्कूल बा पियर कलर बा लोहा बा बस बा टायर बा उजर कलर बा।

मंदिल बा लाल कलर बा गोल्डन कलर बा बैगीनी बा।

घर बा कार बा सीसा बा बलब बल्ब बा हरियर कलर बा टायर बा।

बलब बा ब्लफ बरता बेगनी कलर बा मोटर बा साइकिल बा बल्ब बा --